बस लगा हुआ है लोग आ जा रहे हैं लाइनो में खड़े हैं।

स्वीट की दुकान है यहाँ बहुत सारी मिठाइयां है ।

इ बोर्ड है नीचे दुकान है ।

यहाँ बहुत सारी गाडियां दिखाई दे रही है कार है बोलेरो है --

यहां बाइक के छाप हैं पोस्टर पे।